सामने हमें कुछ डब्बे जमे हुए दिख रहे हैं।

आसमान में बादल दिख रहे हैं।

ऊपर लाइट लगी है।

काफी सारे लोग नजर आ रहे हैं।

एक बैनर लगा हुआ है।

ये बोर्ड नीले रंग का है।

काफी सारी ताक नजर आ रही है।

कार का रंग कथई है।

एक्सिस बैंक दिख रहा है।

आसमान में बादल दिख रहे हैं।

इस चित्र में हमें एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है।

काफी सारी सब्जियां रखी हुई हैं।

आसमान में काफी सारे बादल हैं।

कुछ घास नजर आ रही है।

कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

एक लड़का खड़ा हुआ है जिसने चेक्स वाली शर्ट पहनी है।

कुछ लोग नजर आ रहे हैं।

यहां पर लाइटें लगी हुई हैं।

एक लड़का खड़ा हुआ है।

काफी सारी लाइटें लगी हुई हैं।

इस चित्र में हमें एक कार्यालय दिख रहा है।

आसमान में बादल दिख रहे हैं।

एक टैटू की दुकान नजर आ रही है।

कुछ गमले रखे हुए हैं।

एक लाल टब दिख रहा है।